कपड़े भी रखे हुए हैं जो शर्ट है।

ढेर सारे स्टूल भी लगे हुए हैं।

यहां पे डॉग का एक फोटो भी बनाया हुआ है।

अंदर में बोडे़ ओडे़ भी रखे हुए हैं और डॉग का सारा सामान।

और नीचे गाय के पास भी एक शटर है और यहां पे एक खेत भी नजर आ रहा है जहां पे एक लोग हैं।

कुछ सामान रखें हुए हैं जिसे यह पता चलता है कि यह--

ये ब्यूटी पार्लर या फिर कोई हेयरकट का दुकान है।

के ढेर सारे फोटो बनाए हुए हैं।

फर्श काफी देखने में सुंदर लग रहा है और पास ही में--

और यहां पे एक लोहे का सामान ब्लू कलर से--

यहां पे ढेर सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

पादर जैसा भिलकुल भी नहीं है लेकिन लिखा हुआ है।

घर का कलर व्हाइट रेड --

और यहां पे एक दीवार भी है जिसका कलर पूरी तरह सफेद है।

यहां पे आसपास में ढेर सारे पेड़ भी लगाई हुई है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है और नीचे में हथौड़ी भी दिखाई दे रहा है।

एक कार्टून भी दिखाई दे रहा है ढेर सारा।

यहां पे नीचे में ऑरेंज ऑरेंज कलर भी थोड़े थोड़े पेंट हुए हैं।

रेड कलर में लिखा हुआ है।

किसी टाइप का फंक्शन हो रहा है।

और यहां पे नीचे में घास भी दिखाई दे रहा है ऊपर में एक छोटे छोटे बल्ब भी दिखाई दे--

ढेर सारे स्टैचू बनाए हुए हैं।

बीच में येलो कलर के पास एम_एस चयन लिखा हुआ है।

और उसके ऊपर एक झंडा भी लगाया हुआ है।

पेंटिंग भी बनाई हुई है।

काले कलर की गाय नजर आ रही है जो--